और इसके दूसरे ओर भी कुछ सामाने बिक रही हैं।

और सामने में तोलने के लिए तराजू भी रखा हुआ है।

जिसमे महिलए हैं जो हाध जोड़े हैं और कुछ महिलाए बैठी हैं।

पौधे लगे हुए हैं और इनको स्टैन्ड प्रूफ में ऊपर नीचे सब रक्खा हुआ है।

सामने एक आदमी है जिंसने पीले रंग की टी-शर्ट पहनी है उसके आगे भी एक आदमी है।

यहाँ एक नदी है और नदी के किनारे दो कंस्ट्रक्शन साइट --

जो लोहे की रॉड पे लग से लगाया गया है सामने एक मोटेरसाइकिल भी --

इन बच्चों में एक संता कलोज़ बना हुआ है।

और कुछ प्लेटफर्म भी बने हुए हैं।

और उसपे ओमेगा क्लासेज लग लिखा हुआ है और कुछ बच्चों और बच्चीयों के --

यह यूको बैंक है।

पुस्तक केंद्र है। जिसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है और पवन बुक डिपो लिखा हुआ है।